इसमें बच्चे उछलकूद करते है ताकि वो अपने समय को अच्छे से बिता सके।

और थोड़ा रेस्ट कर रहे है ताकि वो दुबारा ऊर्जा लेकर काम अपने काम को अच्छे से ढंग से कर पाए।

हम यहां कह सकते है कि लोग यहां पर अपना बर्थडे को भी सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं और--

है क्योंकि ये ऊपर गया हो गया होगा या फिर नीचे गया होगा लोग भी यहां पर नहीं है।

यह एक बिल्डिंग की फोटो है जिसमें एक व्यक्ति वी का सिग्नल बनाए हुए हैं।

कुछ लोग फोटो खींच रहे है कुछ लोग अपनी फोटो खिंचवा रहे है।

ए एक दुकान की फोटो है जो की अलंकार ज्वेलर्स नाम लिखा हुआ है दुकान का।

जो की एक पर्वत के ऊपर है और व्यक्ति पर्वत चढ़ रहा है।

जिसमें हम देख सकते हैं कि अनेक प्रकार के फल रखे हुए।

यहां पर नीचे एक बास्केट भी है जीसमें हम पता चलता है कि ये यहां पर गंदे सड़े फलों को इसमें फेंक दिया जाता है।

इन गमले का उपयोग मुख्यतः बड़े बड़े शहरों में फ्लैट में रहने वाले लोग अपने घरों में छोटे छोटे पौधे लगाने के लिए करते हैं।

कुम्हारों की आजीविका अच्छी चलती है और बड़े घर देखने में भी आकर्षक लगते हैं।

आस पास कोई लोग भी नहीं है तो हम मान सकते हैं कि एक आउटसाइड में बिल्डिंग बना हुआ है।

अभी कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि देखने से पता चल रहा है कि अभी धूप का मौसम है।

इसीलिए ज्यादातर बच्चे घरों में ही खेलते है शाम के समय में ही व्यक्ति फील्ड के तरफ निकलते है।

इसमें हमें पता चल रहा है कि एक अअ सरकार द्वारा शिक्षक बच्चों को पढ़ाई के संबंध में कुछ बता रहे हैं।

क्योंकि यह एक फोटो है जिसमे हम जानते हैं कि नदी कितनी तेजी से बह रही हैं लेकिन यह फोटो के द्वारा पता नहीं चलता है।

इसमें हमें हॉटपॉट देखने को भी मिल रहा है जिसमें रोटियां गरम रहती हैं।

दीवार के उस कोने में खड़ा है और एक टेबल भी यहां पर है जो की एक अच्छी खासी बड़ी दुकान देखने में लग रही है।

तो वो यहां पर आ सकते हैं जैसा की फोटो में हम देख सकते हैं एक अपडेट का पच्चास रुपए है।

जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे अअ इंजन ऑयल और अन्य सामग्रियां रखी गई हैं।

हम यह कह सकते हैं कि यह एक सड़क के किनारे का क्षेत्र है जहां व्यक्ति बैठकर अपना थोड़ा देर टाइम पास कर लेते--

आगे यहाँ सूनसान रास्ता है हरियाली है आगे पर्वत भी है।